ढेर सारी हिरण दिखाई दे रहे कुछ बॉक्स दिखाई दे रहे बड़े पेड़ दिखाई दे रहे सुखी लकड़िया दिखाई दे रही है।

केबल दिखाई दे रहे है खुला आशमान दिखाई दे रहा है।